और उसमें पीलर्स जो हैं वो भी आसमानी नीले रंग के हैं इसके इलावा वहाँ पे तीन औरतें --

बिजली की सप्लाई के लिए और आस-पास कुत्ते और एक दो और जानवर जो हैं वो घूम रहे हैं।

और डॉक्टर के ठीक पिछली दिवार पे जो है वो एक वॉल फेन लगा हुआ है और उसके पास एक टॉवल भी टंगा है ।

जिसपे अ प्लेटफार्म पे एक ट्रेन खड़ी है और एक प्लेटफार्म बिल्कुल खाली है।

और वहाँ पे बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन जो है वो बड़े अच्छे करीने से लगाके रखे गए हैं |

ये एक बौद्ध मंदिर का दृश्य है जिसमें बहुत सारे बौद्ध भिक्षु --

मैहरून रंग की अ सिर पे पगड़ी रखी है और ऑफ़ वाइट रंग और मैहरून रंग का उसका शेरवानी सूट है।